इस पिक में एक व्हाइट कलर की कार है जिसमें एक जेंट्स रिपेयरिंग कर रहा है। साइड में येलो व्हाइट कलर की कार खड़ी है।

छे पोस्टर है। ये रात बहुत से बलब लगे हैं। एक गीली सड़क दिखाई दे रही है।

यहाँ सर एवं टीचर खड़े हैं। यहाँ विंडो है। ये दिन का व्यू है और पेड़ लगे हैं।

इस रूम में दो चाइल्ड एक मॅम योगा करते हुए दिखाई दे रही है एक डोर है। ये दीवार येलो कलर क--

हाउस दिखाई दे रहे हैं पेड़ दिखाई दे रहे हैं विंडो है गीली जगह है।

इस पिक में हमें फोर ऑटो दिखाई दे रही हैं। एक ई-रिक्शा दिखाई दे रहा है। पीछे मॉल दिखाई दे रहा है।

पिक में हमें स्वेटर की शॉप दिखाई दे रही है जिसमें कई प्रकार के स्वेटर रखी हैं। जैसे कि ऑरेंज ब्लू ग्रीन पिंक रखी हैं।

इस पिक में बंगला जैसे घर दिखाई दे रहा है।

हमें ट्रेन की विंडो से ट्रेन की पटरी दिखाई दे रही है गिट्टी डली है एक जेंट्स खड़ा है पानी भर रहा है हाउस दिखाई दे रहा है दो टंकी है चार विंडो है दो डोर है पेड़ दिखाई दे रहे है।

दो जूते रखे हैं एक ऑरेंज कलर के एक येल्लो ओर ग्रे कलर के हैं घास दिखाई दे रही हैं खेल का मैदान हैं पेड़ दिखाई दे रहे हैं।